और कांच की खिडकियां दिख रही हैं। शामने --

बहुत सारे पुरुष खड़े हुए है और वाइट --

यहाँ पर एक फंक्शन हो रहा है।

और एक पुरुष जीना पे खड़ा हुआ है।

यहाँ पर बहुत शारा मैदान दिख रहा है।

ऊपर आश्मान दिख रहा है।

यहाँ पर अ बहोत सारी गाड़ियाँ रखी हुई है रोड पर रेड ब्लैक ।

लड़किया पानी में खड़ी हुई है। नीचे --

और कुछ पेड़ भी दिख रहे हैं । ऊपर आसमान दिख रहा है।

उसपे लाइट्स जल रही है। पिंक कलर के कपड़े वो सारे --

येलो कलर जिसने वाइट कलर की शर्ट ब्लू इस टाइप से सेट पहनी हुई है।

और शाइड में कुछ पेड़ दिख रहे है और इसमें --

एंड किसी ने पिंक येलो --

और रोड दिख रहा है। इसमें --

एक पुरुष खड़ा है। वाइट कलर की शर्ट पहना हुआ है। वाइट कलर की टोपी लगाई हुई है।